इसमें कुल पन्नी में बंद रखा हुआ है यहां पे लाइट भी जल रही है।

पे एक मेज भी दिखाई दे रही है जो भूरे रंग की है जिसपे एक अखबार पड़ा हुआ है।

जिनके हाथ में किताबें हैं आसपास बहुत सारी बेंच भी पड़ी हुई है।

आसपास बहोत बड़े बड़े गमले रखे हुए है जिनमे फूल लगे हैं।

यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो पाइप लेके कार को साफ कर रहा है।

जिनसे तार निकले है इस दुकान के आगे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक कुर्सी भी रखी दिखाई दे रही है इसमें बलभ भी जल रहा है।

इस पत्थर पे एक आदमी बैठा हुआ जिसने काली शर्ट पहन रखी है।

यहां पे एक झोपड़ी सी दिखाई दे रही जो छप्पर की छै हुई है।

यहां पे कुछ काले रंग के खंभे भी लगे हुए हैं।

जिसपे बाइक खड़ी हुईं है यहां पे एक मशीन दिखाई दे रही हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे दो आदमी भी खड़े हैं।

यहाँ पे झालर भी लगी दिखाई दे रही हैं इसके अंदर बोहोत सारी लाइटें जल रही हैं।

यहां पे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जो सफेद रंग से पुती हुई है।

यहां पे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ है।